यहां पर योग हो रहा है यहां पर एक प्लास्टिक की फटी दी गई है लाइट लगी हुई है स्विच बोर्ड है।

कोई फैक्ट्री है यहाँ पर कोई मशीन है जो एक अंकल उसको चला के दिखा रहे हैं एक अंकल खड़े हुए हैं और बाकी सब लोग देख रहे हैं काफी सारे लोग हैं उस पे टीन पड़ी हुई है ग्रीन ।

यहाँ पे पिलर बने हुए है तार से तार जुड़े हुए है पेड़-पौधे भी लगे हुए है गंदगी बोहोत पड़ी हुई है।

एक दीदी खड़ी हुई हैं। यहां पे पेड़ पौधे बहोत सारे हैं। लाइट वगैरा लगी हुई है यहाँ पे । ऊपर से डंडे से रुके हुए हैं ये। यहाँ पे कुछ --

एक माला है जो यहाँ स टॉवल टंगी हुई हैं माला वैगरह यहाँ पे बनते हैं और डालियाँ वैगरह यहाँ रखी हुई हैं ऊपर पन्नी पड़ी हुई है लाइट लगी हुई है यहाँ पे --